साइड में कैरेट्स रखी हुई हैं लाल रंग की।

कुछ प्लेट ओनली रखी हुई है कोको - कोला की थम्स - अप की बोटल्स दिखाई दे रही हैं।

आगे जमीन पर बहुत सारे पत्ते गिरे हुए हैं।